इस इमेज में कुछ गाड़ियां दिखाई दे रही हैं यहां पर कुछ बाइकस भी नजर आ रही है।

इस इमेज मे बहुत ज्यादा पानी दिखाई दे रहा है यह कोई नदी हो सकती है या फिर कोई दरिया हो सकता है यहाँ पर काफी दूरी पे--

इहा पर दीबार के साथ शीशा लगा हुआ दिखाई दे रहा हे इहा पर बोहोत सारी चीजे राखी--

इमेज में एक ऑटो दिखाई दे रहा है। यहां पर एक रिक्शा दिखाई दे रहा है यहां पर एक बाइक के ऊपर दो लोग जा रहे हैं।